कलर बहुत ही प्यारा है बहुत लाइटवेट कलर है। यहां के रोड भी बहुत अच्छे हैं बीच मे एक बड़ा सा पोधा भी है उसके आगे भी एक खंडहर टाइप का है।

अभी एक जिम का ही बिल्डिंग हैं जहां पे बोहोत सारे लोग एक्सरसाइज करने आये हुए हैंऔर कुछ इंस्ट्रूमेंट्स जो की खाली ऐसे ही रखे हुए हैं इसका फर्श ग्रीन कलर का हैं।

एक बच्चा साइकिल चला रहा हैं और यह काफी साफ जगह हैं।